यह एक दुकान है जिसमें बहुत सारी पलाई का थोक रखा हुआ है।

इसे चढ़ने के लिए स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी बनी हुई है।

खड़ा है और कुछ बता रहा--